दफ्तर दखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी--

इस पिक्चर में हमें एक दफ्तर दिखाई दे रहा है।

एक तला दिखाई भी रहा है।

पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रही है और बहोत सारे टायर भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और गौशाला में बहोत सारी गाएं खड़ी हुई दखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है जिसकी ऊपर--

की शॉप दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक गार्डन दिखाइ दे रहा हैं।

इस पिक्चर में हमें एक दरिया दिखाइ दे रहा हैं।